लगता है यहाँ पे लोग की समस्याएं है कोविड की समस्याएं है जिसे लोग --

देखिये एक्सरसाइज सेंटर्स है यहाँ पे काफी सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहा।

अभी अलग-अलग तरह के शॉप्स है जैसे शूट्स का है स कपड़े का है।

है यहाँ पे भारती इंटरनेशनल स्कूल भी बगल में है।

ये उ चारे को खा रहे हैं।